लोहे से बना हुआ है और इसके बगल में एक पेड़ नजर आ रहा है और यह मंदिर--

यह एक खेत का दृश्य है जिसमें हरी हरी धान लगी हुई नजर आ--

यह एक बड़ी सी कंपनी का दृश्य है जिसका कलर व्हाइट एंड ब्लू है।

और एक घड़ी भी नजर आ रही है इस कम इस ऑफिस में बहुत सारे चेयर--

यह एक पपीते का पेड़ का बगान है जिसमें बहोत सारे लगे हुए पपीते नजर आ रहे हैं।

और एक मस्जिद भी बना हुआ नजर आ रहा है और इस सिल्वर की दुकान में दो--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

और एक चोंगा नजर आ रहा है और इस मंदिर के अगल बगल में--

यहां पे एक खिड़की भी नजर आ रहा है और--

और इसके बगल में एक पेड़ नजर आ रहा है और उसके बगल में एक बड़ी सी घर भी नजर आ रही है जो कि दो तले मकान है।

और यहां पे एक सामने में बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है।

और यह व्यक्ति शीशे में वीडियो बनाते हुए नजर आ रहा है इस जिम में एक लाइट्स भी लगा हुआ है।

और इसके ऊपर तीन झंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और इस अ कैफे में बहुत सारे लाइट्से लगी हुई नजर आ रही हैं और इस कैफे की कलर --

और यहां पे बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं और इस मैरिज हॉल में --

चार प्लेट से नजर आ रहे हैं उसमें चार चम्मच नजर आ रहे हैं।

और उस मूर्ति के बगल में एक बड़ी सी बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

और इस स्कूल में एक पंखा नजर आ रहा है जिसका कलर व्हाइट है।